इस इमेज में सामने एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल पर खाने की प्लेट्स रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर नाव में कुछ यात्री बैठे दिखाई दे रहे हैं और स सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा है।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

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है जहां पर कुर्सी टेबल लगे हुए नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पे एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग नहाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक फलों की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर ढेर सारे फ्रूट्स और दो लड़के बैग टांगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर एक मकान बनने का काम चलता दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ मजदूर यहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा सामने यहां पर एक छोटा सा पार्क दिखाई दे रहा है और सामने यहां पर एक बड़ा सा गेट भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक लोहे स्टील की रेलिंग दिखाई दे रही है और दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है जहां पर कई सारे कुर्सी टेबल लगे हुए नजर आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक खिलौनों की दुकान दिखाई दे रही है और ऊपर बोर्ड पर आओ बच्चों टॉय है लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल कुर्सी पे कुछ लोग बैठकर खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक डेकोरेशन की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर कई सारा सजावट का सामान नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहां पर दो कारे खड़ी हुई नजर आ रही है।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है बाहर एक सफेद रंग के कार खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सड़क पर कुछ कारें चलती नजर आ रही है और यहां पर कुछ बड़ी-बड़ी इमारतें भी दिखाई दे रही हैं।